एण्ड आपको उधर साइड देखेंगे तो आपको उधर साइड बोहोत सारे बच्चे लोग भी दिखाई दे रहे होंगे जो रनिंग कर रहे हैं एण्ड आपको उधर देखे आपको एक बोहोत बड़ा सा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा होगा। वहा पे हल्की-हल्की घाँस --

हैलो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसी शोरूम का व्यू है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो मेंस के भी पोस्टर नजर आ रहे होंगे एंड आप पीछे कि ओर देखेंगे की लेडीज खड़ी है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो बहोत सारे चेयर्स भी लगे हुए हैं।

गाइस जैसा की आप देख सकते है ये एक बैंक के बाहर का व्यू है| आप देखेंगे तो यहाँ पे आप को एक पोस्टर नजर आ रहा होगा और दो आदमी भी आप को दिखाय दे रहे होंगे|